जे सी बी एक गाड़ी को ढेलते हुए ले जा रही है। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि होटल एजेंसी भी काफ़ी अच्छी और बड़ी भी लग रही है।

सामने घास है और जो अच्छी लग --